रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन में बोहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं। ट्रेन का इंतजार कर रहे --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

बीचो बीच एक रोड गया हुआ है। बहुत सारे बगल में घर भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक आदमी खड़े होके फोटो खींच रहा है। यहाँ पे देखने में बहुत हरा भरा --

मशीन हैं। लोग एक्सोसाइज़ कर रहे हैं। वहां पे एक लड़का शीशे के सामने खड़े होके फोटो खीच्वा --

यह एक एयरटेल का दुकान है। यहाँ पे बहोत सारे --